सामने एक बाइक खड़ी है और पेड़ लगे हैं पेड़ो का रंग हरा है स्कूल का रंग सफेद है एक साइड में बैनर लगा -----

ये एक रोड का चित्र नजर आ रहा हैं जिसमे एक खंबा है जिसमे तार लटक रहे है एक लड़का साइकिल चला रहा है।

सामने पूरा मैदान है जिसका फर्श दिख रहा हैंसाइकिल खड़ी है पूरा आसमान दिख रहा हैं।